पर्ल में हैश पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
पर्ल में हैश और
हैश के एलिमेंट को एक्सेस करना
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ
उबंटु लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम
पर्ल 5142 और
gedit टेक्स्ट एडिटर
आप अपने पसंद के किसी भी text editor का उपयोग कर सकते हैं
इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए आपको पर्ल में वेरिएबल्स और डेटा स्ट्रक्चर्स का ज्ञान होना चाहिए
कमेंट्स लूप्स कंडिशनल स्टेटमेंट्स और अरैज का ज्ञान अतिरिक्त लाभदायक होगा
कृपया संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएँ
हैश डेटा का एक क्रमविहीन संग्रह है
यह एक की/वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर है
हैश की कीज़ विशिष्ट होती हैं
फिर भी हैश की समरुप वैल्यूज़ हो सकती हैं
यह हैश का डिक्लेरैशन है
देखते हैं कि हैश से की key की वैल्यू कैसे प्राप्त करें
कीkey की वैल्यू एक्सेस करने के लिए सिंटेक्स है
dollar hashname ओपन कर्ली ब्रैकेट सिंगल कोट keyname सिंगल कोट क्लोज कर्ली ब्रैकेट
सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके हैश को समझते हैं
मैंने gedit में perlhash dot pl फाइल में कोड पहले ही टाइप कर दिया है
कोड टाइप करें जैसे कि आपकी perlhash dot pl फाइल में दिखाया गया है
पर्ल में हैश percentage चिन्ह द्वारा घोषित होता है
ये हैश की कीज़ हैं
और ये हैश की वैल्यूज हैं
ध्यान दें हैश की कीkey को एक्सेस करने के लिए डॉलर चिन्ह का उपयोग किया जाता है
फाइल को सेव करने के लिए ctrl + s दबाएँ
फिर टर्मिनल पर जाएँ औऱ perl perlhash dot pl के रुप में
पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
और enter दबाएँ
आउटपुट टर्मिनल पर दिखाया गया है
अब हैश से कीज़ को जोडना और हटाना देखते हैं
कीkey को जोडने के लिए सिंटेक्स है
dollar hashname ओपन कर्ली ब्रैकेट
सिंगल कोट keyname सिंगल कोट
क्लोज कर्ली ब्रैकेट equal to $value सेमीकॉलन
कीkey डिलीट करने के लिए है delete dollar hashname ओपन कर्ली ब्रैकेट
सिंगल कोट keyname सिंगल कोट क्लोज कर्ली ब्रैकेट सेमीकॉलन
अब इसे एक सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके समझते हैं
मैंने hashkeyoperations dot pl फाइल में कोड पहले ही टाइप कर दिया है
यह हैश का डिक्लेरैशन है
हम इस हैश से कीज़ जोड़ेंगे डिलीट करेंगे
यहाँ हम पहले ही बनाये हुये एक हैश में की key जोड़ रहे हैं
यह वेरिएबल में वैल्यू निर्धारित करने के समान है
delete कीवर्ड की key को डिलीट करने के लिए उपयोगित है
हमें कीkey को डिलीट करने के लिए पास करने की आवश्यकता है
फाइल को सेव करने के लिए ctrl+s दबाएँ
टर्मिनल पर जाएँ और perl hashkeyoperations dot pl के रुप में
पर्ल स्क्रिप्ट निष्पादित करें
और enter दबाएँ
आउटपुट टर्मिनल पर दिखाई देगा
हैश कीज़ और वैल्यूज़ को क्रमबद्ध करना देखते हैं
कीज़ को क्रमबद्ध करने के लिए सिंटेक्स है
sort ओपन ब्रैकेट कीज़ percentage hashname क्लोज ब्रैकेट सेमीकॉलन
इसी प्रकार हम हैश की वैल्यूज़ क्रमबद्ध कर सकते हैं
sort ओपन ब्रैकेट वैल्यूज़ percentage hashname क्लोज ब्रैकेट सेमीकॉलन
एक सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया समझते हैं
gedit में sorthash dot pl पर जाएँ
कोड टाइप करें जैसे आपकी sorthash dot pl फाइल में स्क्रीन पर दिखाया गया है
यहाँ हमने एड्रेस का हैश घोषित किया है
यहाँ कीज़ को क्रमबद्ध करने के लिए हमने कीज़ फक्शन के साथ sort इनबिल्ट फंक्शन का उपयोग किया है
यह हैश कीज़ को वर्णात्मक क्रम में क्रमबद्ध करेगा
इसी तरह हम sort फंक्शन का उपयोग हैश की वैल्यूज़ पर कर सकते हैं
क्रमबद्धता संख्यात्मक कीज़ और/या वैल्यूज पर भी कर सकते हैं
file को सेव करें और terminal पर जाएँ
perl sorthash dot pl टाइप करके स्क्रिप्ट को निष्पादित करें और एंटर दबाएँ
आउटपुट टर्मिनल पर दिखाई देगा
अब देखते हैं कि हैश की सभी कीज़ और वैल्यूज़ को कैसे प्राप्त करें
पर्ल सभी हैश कीज़ और वैल्यूज़ को फेच करने के लिए इनबिल्ट फंक्शन को प्रदान करता है
keys फंक्शन का उपयोग हैश की सभी कीज़ को पुनः प्राप्त करने के लिये किया जाता है
values फंक्शन सभी कीज़ की वैल्यूज़ रिटर्न करता है जबकि
each फंक्शन हैश पर दोहराया जाता है और हैश से की/वैल्यू key/value युग्म रिटर्न्स करता है
इन्हें एक सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके समझते हैं
इसके लिए हम perlhash dot pl स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे जिसे हमने पहले ही इस ट्यूटोरियल में बनाया है
निम्नलिखित कोड के भाग को टाइप करें जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया है
अब कोड को समझते हैं
हैश में keys फंक्शन एक अरै रिटर्न करता है जिसमें हैश की सभी कीज़ शामिल हैं
हैश में values फंक्शन हैश की सभी कीज़ के लिए वैल्यूज़ के अरै को रिटर्न्स करता है
each फंक्शन की/वैल्यू के युग्म को रिटर्न्स करता है
यहाँ हमने while लूप का उपयोग किया है
यह हैश की प्रत्येक की/वैल्यू पर पुनरावृति करेगा जो each फंक्शन द्वारा रिटर्न होती है
फाइल को सेव करने के लिए ctrl+s दबाएँ
अब perl perlhash dot pl टाइप करके टर्मिनल पर
स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
और enter दबाएँ
निम्न आउटपुट टर्मिनल पर दिखाई देगा
अब हैश पर लूपिंग के कुछ अन्य तरीके देखते हैं
हम हैश की प्रत्येक कीkey की पुनरावृति के लिए foreach लूप का उपयोग कर सकते हैं
फिर कीkey की वैल्यू पर क्रियाओं के सेट को क्रियान्वित करते हैं
सिंटेक्स स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है
यहाँ foreach लूप की प्रत्येक पुनरावृति हैश से $variable को key निर्दिष्ट करेगी
फिर यह उस $variable का उपयोग वैल्यू को फेच करने या क्रियाओं के सेट को क्रियान्वित करने के लिए करता है
इसी तरह हम हैश वैल्यूज़ पर लूप कर सकते हैं जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया है
हम एक सेम्पल प्रोग्राम देखेंगे
अतः gedit में loopingoverhash dot pl पर जाएँ
कोड के निम्न भाग को टाइप करें जैसे आपके loopingoverhash dot pl पर दिखाया गया है
कोड का यह भाग हैश की सिंगल कीkey को रिटर्न करता है
यहाँ हमारे केस में
पहली बार डॉलर की$key विभाग को कीज़ के रुप में शामिल करता है
foreach की दूसरी पुनरावृति में नेम कीkey रिटर्न होती है
ध्यान दें हैश डेटा का अव्यवस्थित संग्रह है
अतः कीज द्वारा प्राप्त रिटर्न हैश बनाते समय परिभाषित क्रम में नहीं होगा
वैल्यूज़ पर लूप एक सामान्य तरीके से कार्य करता है
फाइल को सेव करने के लिए ctrl + s दबाएँ
फिर टर्मिलन पर जाएँ और perl loopingoverhash dot pl के रुप में
पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
और enter दबाएँ
निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित किया जाता है
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
सेम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके
पर्ल में हैश और
हैश के एलिमेंट्स को एक्सेस करना
यहाँ आपके लिए नियत कार्य है
कीkey के रुप में विद्यार्थी का नाम होने
और वैल्यू के रुप में उसका/उसकी प्रतिशत होने पर हैश को घोषित करें
कीज़ वैल्यूज और each फंक्शन का उपयोग करके हैश पर लूप करें
फिर प्रत्येक विद्यार्थी के प्रतिशत को प्रिंट करें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
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख भी सकते हैं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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
आशा करते हैं कि आपने इस पर्ल के ट्यूटोरियल का आनंद लिया होगा
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ